कोई एक दूसरे को मारा पीटी भी कर रहे हैं और सब बढ़िया--

यहां पर बस स्टैंड है यहां पर बसें खड़ी हैं और लाइन में कतार में--

एक अपने से सामान निकाल कर अपने सेही जाकर काउंटर पर बिलिंग करानी पड़ती है।

अदभुद आसपास घूमते-फिरते हैं। यहां पर--

स्विमिंग पूल में मजे ले सकते इसके व्यू का आराम से दर्शन कर सकते--

होडिंग है यहां पर शादी वियाह हो सकता है।

इटसेल्फ गुड प्लेस है अच्छा खासा मज़ा आ रहा है।

ये खाने का शॉप है जहां पर मिठाई वगैरह मिलता है केक मिलता है कोल्डड्रिंक वगैरा सब मिलता है।

ये सरकारी स्कूल की विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने गुरुजनों से अच्छे खासे क्वेश्चन क कर रहे--

जो करना है करें और आप एंजॉयमेंट ले।

बहुत सुंदर बिल्डिंग बनाया है लाइटिंग का अच्छा खासा व्यवस्था किया है दीझे लगाया है।

ये एक पार्किंग लॉट है जहां पर लोग--

आप भी खाइए अपने परिवार वालों को भी खिलाइए और साथ में सात लोगों को भी।

इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते और एंजॉय कर रहा है अपना लाइफ का--

लाइफ के साथ भी इंजॉय कर रहा है और मस्त मगन में है अपनी जिंदगी के सा --

जो काम कर रहे हैं--

तुम में जिंदगी में बंगाल सीख लेना--

जय हो प्रभु श्री केशरी काल--

इसको किसी सुंदर लड़कों के दिए--

ये एटीएम का शोरूम--

जो है लोग कोई आमीर हो जो जिंदगी के बाद भी--

ये शादी ये मेहमान--

आसपास की गाड़ी गलियां--